सामने एक पर्स है चश्मा है सीज़र है स्प्रे बोतल है ऊपर में भी कुछ-कुछ सामानें रखी हुई है डोर हैं।

तस्वीर में एक म्युजियम है जिसमें बोहोत सारी चीज़ राखी हुई है शीशे के अंदर--

साइड में एक पौधा है। दो चार गमले भी रखे हुए हैं। पीछे एक घर है।